सामने एक बाजार नजर आ रहा है सब बीच मे सड़क नजर आ रही है सड़क के किनारे बुक की स्टाल लगी हुई है और पीछे भी दुकाने नजर आ रही हैं किताबों --

यहां पर हमें एक कच्ची सड़क नजर आ रही है| सड़क के किनारे बड़ा सा नाला नजर आ रहा है| सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

अब में छत से ली हुई एक अ फ़ोटो नज़र आ रही है। इस --

पीछे हमें एक वॉटरफॉल नज़र आ रहा है फुव्वारा नज़र आ रहा है और आगे उस व्यक्ति का हेलमेट रखा हुआ नज़र आ रहा है।

और दो बड़े-बड़े झूले नजर आ रहें हैं। एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए कलरफुल झूले हैं। पीछे कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही है और आसमान भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर हमें डबल फ्लोर की एक होटल नज़र आ रही हैं जिसमे नीचे डाइनिंग हॉल है और ऊपर रूम्स हैं।

यहा पर हमें एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है।

और दो व्यक्ति सीढियों के द्वारा चढ़ते हुए मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर के आसपास बहोत सारे पेड़ भी हैं पीछे हमें आसमान भी नजर आ रहा है। मंदिर के झंडे भी --

और मैदान के किनारे- किनारे गमले रखे हुए हैं जिसके अंदर पौधे उग रहे हैं। सामने हमें कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आसमान भी नज़र आ रहा है।